मुझे इस चित्र में बहोत सी लेडीज दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस चित्र में मंदिर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में हार दिखाई दे रहे है।

मुझे इस चित्र में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं मुझे इस चित्र में--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

मुझे इस चित्र में बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में टाइल्स दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में अलग रंग की लाइट दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में घड़ी दिखाई दे रही है मुझे इस चित्र में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में माइक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में पंखा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में लाइट दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में रोड दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में स्टेयर दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में कपड़ों की शॉप दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में चेयर दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस चित्र में समृद्धि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में पाइप दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र मे एक कैप दिखाई दे रही है।